और कुछ जेंट्स लेडिस खड़ी हैं और मोटर साईकिल खड़ी हैं और कुछ आदमी खड़े हैं। कुछ पत्ती दिख रही --

आ नीचे कुछ पैर पोछने- पोछने का कुछ बिछा हुआ है और अन्न बाहर का उजेला आ रहा है और कुछ हलकी सी धुप और एक लकड़ी का खम्बा --